बहुत ही अच्छा यह व्यू जोकि एक स्कूल के अंदर कमरे का व्यू है और यहां पर टेबल लगे हुए हैं कुर्सियां लगी हुई हैं यहां पर कोई बच्चा नहीं हैं और सामने ही एक --

और मंदिर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो कि माथा टेकने के लिए लाइन में अह लगे हुए हैं मंदिर के अंदर कुछ घंटियां भी यहां पर लगी हुई हैं।

यहां सामने ही कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो की एक पार्क में खड़े हुए हैं पार्क बहोत ही अच्छे बनाई गई है और पार्क के बीच बहोत ही अच्छे फूल लगाए गए हैं।

यहां एक गोल्ड की दुकान।

यहां पर कुछ कार दिखाई दे रही है जोकि एक गुरुद्वारे के बाहर खड़ी है सामने एक पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है उसी के साथ कुछ लोग भी खड़े हैं।

जो की अ एक टीन का डब्बा लगा हुआ है साथ में ही कुछ लोग यहां पर--

बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर कुछ बना रहे हैं और उसी के साथ लोग कुछ यहां पर--

यहाँ एक बहोत ही अच्छे अ जोकि जे--

एक लगा हुआ जोकि एक झोपड़ी बनी हुई है उसके नीचे--

यहां पर कुछ बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हैं जो कुर्सियों के ऊपर लोग बैठे हैं।

अह कॉम्पिटिशन कर रहे है जोकि यहाँ पर--

यहां पर एक सामने ही बच्चा खड़ा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से--

यहां पर कि लोग पौड़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे हैं सामने ही एक--

अ दरवाजा लगा हुआ है उसके पीछे काफी लोग यहां पर खड़े है और सामने ही कुछ लोग जो की बोड़ियों के साथ खड़े है और यहां पर कुछ लोग बाहर खड़े हैं।